फर्श टाइल्स से लगाया गया है और बैलून भी लगाया गया है।

पेड़ पौधे भी हैं और एक पोल है जिसपे भिन्न भिन्न प्रकार का तारे भी हैं।

छठ के लिए भीख मांगते हुए दो तीन औरत भी हैं और यहां पे एक अपाची एक स्प्लेंडर और अन्य गाड़ी लगाए हुए हैं।

एक स्ट्रीट लाइट और उसके बगल में दो केले भी लगाए गए हैं और कुछ बॉक्स भी रखे गए हैं।

एक कुर्सी भी लगाई गई है कबड में एक बॉटल भी रखा गया है कबड वाइट कलर का है।

यह एक ईंटे का भट्ठा नजर आ रहा है और इसमें बहुत सारे ईंटे भी रखे गए हैं और एक ट्रैक्टर भी लगा हुआ है।

द्वारे पर बहोत सारे चप्पल भी रखे गए हैं और ओटा में छेद भी है।

ऊपर से ग्रीन कलर का कपड़ा भी लगाया गया है।

एक किसी माल का तस्वीर है जिसमें बहुत सारे पुतले रखे गए हैं जिसमें उनका साड़ी या फ्रॉक पहनाया गया है।

बहोत सारे आदमी पीछे भी है एक खंभा भी नजर आ रहा है।

यह किसी रूम का तस्वीर है जिसमें बहुत सारे कुर्सियां और टेबल भी रखे गए हैं।

चार खिड़कियाँ भी हैं।

बगल में पेड़ भी लगाया हुआ गया है।

बाउंड्री के पीछे बहुत सारे झाड़ियां भी हैं ।

बल्ब भी बर रहा है और रूम में बहुत सारे कुर्सियां भी रखी गई है जो ब्लू कलर के हैं।

कुर्सी पर एक आदमी बैठा भी हुआ है।

रेड कलर में यामाहा दीवार पे लिखा गया है।

यह किसी छठ घाट का तस्वीर है जिसमें बहोत सारे पूजा करने वाले औरत बैठे हुए हैं और बहुत सारे आदमी भी है।

जैकेट और व्हाइट टोपी भी है।